ये लड़कों का पार्लर है यहाँ पर--

ये शिवपुर जाने का मार्ग है। उम्म यहाँ पर ट्रेन से जाया जा रहा है लोग इसके नीचे खड़े हैं। शिवपुर जाने का मार्ग ट्रेन से भी तय किया जा सकता है। लोग हालांकि लोग बाइक से भी जा सकते है।